फोटो स्टेट है जहां कि बुक ऊक व कापी ओपी सभ मिलता है इसके बाहर में--

हाय गाईस यह बाइक का शोरूम है जहां पे बाइक बनाया जाता है।

और एक चल रहे हैं करके बाल्टी हैं पाइप है।

जो क्या है बगल में है गैरेज है उसमें।

हाय गाइज आप देख सकते ये टी हाउस है महेता टी सेंटर इसमें बहुत प्रकार के--